यहां पे टीचर्स अपने बच्चों को कुछ लेक्चर्स दे रहे हैं।

यहां चित्र में एक फर्नीचर की दुकान दिखाई दे रही है और यहां पे काफी सारे फर्नीचर्स रखे हुए है।

इस चित्र में एक फीमेल जनरल वार्ड दिखाई दे रहा है।